गोल सा पहिया लगा हुआ है तो आदमी भी खड़े हुए जा रहे हैं साइड में देखिए कितनी अच्छी सजावट है अंदर तक जाने के लिए सुविधा अच्छी है इसमें।

पार्किंग में फोर व्हीलर खड़ी हुई है और साइड में रेलिंग लगी हुई है जो काफी सुंदर है और उस रेलिंग के अंदर ग्राउंड है जो ग्राउंड में काफी अच्छे पेड़ हैं।

यह देखिये एक रोड है। यह रोड एक घर की तरफ जा रहा है और घर दो मंजिल का हैं एक के ऊपर रैलिंग लगी हुई है।

यहा देखिये एक-एक मंदीर हैं काफी सुन्दर मंदिर है उसके छत पर कई सारे --

यहां देखिए टेंट की सजावट जो शादी के लिए है यहां पर फूलों की माला से--

यह देखिए कितना ए-एक छोटा सा रोड है जो रोड की साईड मे रेलिंग लगी हुई है।

यह देखिए कार्यालय खंड विकास अधिकारी --

काफी सारे गेट हैं इसके और इसके ऊपर भी काफी सारे गेट हैं बहुत बड़ा हाल है इसका।